यहां पर गिट्टी भी रखा हुआ है बांस है छड़ है और बॉउंड्री किया हुआ है जिसकी दीवार पिंक कलर की है पीछे और भी गाड़िया है और यहां पर हरे-हरे पौधे है पेड़ है।

यह एक जंगल का एरिया जैसा लग रहा है नीचे में कुछ सूखे पत्ते भी है और यहाँ पर हरे रंग की टहनियाँ भी है जो काफी प्यारी लग रही है यह बहुत ही नेचर से भरा हुआ --

जिनमे कुछ चेयर्स में प्लास्टिक लगे हुए है और कुछ बिना प्लास्टिक के है यहां की दीवारें काफी डिजाइनर है ऊपर में रेड कलर किया है यहाँ पर कुछ लाइट --

एक टंकी जो दूर में है वो ग्रीन कलर का है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ है छोटे-छोटे पौध भी है जो हरे रंग के --